इस इमेज में हमें एक --

गोल्डन कलर के स्टैचू दिख रहे हैं जो काफी अच्छा दिखने में लग रहे हैं।

इस इमेज में हमें--

और एक आदमी अंदर जाते हुए दिख रहे हैं और कुछ पोस्टर लगाए हुए जो बंग बंगाली--

बच्चे इस गार्डन में खेल रहे हैं |

सश शादी की कुछ पंडालस दिखाई दे रहे हैं और--